जैसे की मैं देख रहा हूं एक मंदिर मुझे दिख रहा है और पीछे झाड़ लगी हुईं हैं।

और ऊपर भी कुछ एक झाड़ सा दिख रहा है मुझे।

और और कुछ बादलों भी दिख रहा है।

और टाइल डमरू वाली टाइल लगी हुई है। सामने कुछ सामान रखा हुआ है खंभा सा लगा है शटर भी लगा है।

और एक पुतला मुझे दिख रहा है और डब्बों में भी सामान रखा हुआ है और शीशा कांच लगी हुई है फ्रिज भी दिख रहा है मुझे।

कुछ सामान रखा हुआ है अंदर और एक गाड़ी भी दिख रही है मुझे।

और ऊपर भी साइड बाजू से एक मंदिर और दिख रहा हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मुझे एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है और पंखे दिख रहे हैं और भी आदमी है कुछ एक दुकान है।

और लगता है ट्रेन आने वाली है इसलिए वेट कर रहे हैं पंसार मुझे दिख रही है।

और ऊपर एक पंखा लगा हुआ दिख रहा है।

और सामने गेड मुझे दिख रहा है दिखाई दे रहा है।

और कुछ कपड़े टंगी हुई हैं लगता है कोई दुकान है एक बाजू से दुकान बंद है।

और कुछ ठेला में खड़ी हुई है ठेला के बाजू से--

और कुछ हल्का-हल्का तार भी दिख रहा है और कुछ बोर्ड दिख रहा है मुझे कुछ मार्शले दिख रही हैं।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मुझे कुछ टाइल्से लगी हुई दिख रही हैं कुछ पत्थर भी दिख रहे हैं सामने कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।